रोड के किनारे एक छोटा सा दुकान है जहा पे बहुत सारे छोटे- छोटे पैकेट मे समान लटकाए गए है कोल्ड ड्रिंक्स रखे गए है।

दुकान के जस्ट सामने एक पैशन प्रो का बाइक है।

दो तीन वायर कनेक्टेड है बहुत सारी मशीन अपने एक दूसरे से कनेक्टेड है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिकल दुकान है जहा पे बहुत सारे इयरफोंस टंगे हुए है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल्स मोबाइल फोंस का सामन रखा हुआ है।

और पौधे हैं लत हैं जो कि कुछ इंसान के फेस ढके हुए हैं कुछ के दिख रहे हैं।

यह एक घर है जहा पे बहुत सारे बैलून्स रेड कलर के लटगाये गए है सजाये जा रहे--

यह सीतल मिनी मॉल है। जहां पे फूलस गेट में फूल सजाए हुए हैं लगाए हुए हैं ।

वहां पे बहुत सारे बॉक्स छोटे छोटे बॉक्स है डब्बे में स्प्रे क्रीम पाउडर रखे गए हैं।

घर के पीछे साइड चारों तरफ छोटे छोटे पौधे है और खेत भी है।

रेलवे स्टेशन के ऊपर में एक गुंबज बना हुआ है जो की एक मंदिर के जैसा है।

रोड के किनारे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और बहुत सारे गाड़ियां खड़ी है।

इंसान भी वहां पे खड़े हैं जो कि बहुत ही प्यार सा दिख रहा है मौसम बहुत ही अच्छा है।

यहां पे एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जहां पे बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि डांस करती हुई हैं ।

यह एक दुकान है जिसपे बहुत सारा टॉयलेट रखे हुए है।

यह एक चिल्ड्रेंस प्लेग्राउंड है जहां पे बहुत सारे चिल्ड्रेंन हैं जो खेल रहे हैं।

कुछ ड्रेस पहन करके बच्चे हैं और एक ग्राउंड के अंदरगत घेरा हुआ है।

एक लाल कलर का बिछौना भी है एक छोटा सा टेबल है जिसके ऊपर स्प्राइट का डब्बा भी है।

यह एक दुकान है। जहाँ पे बहुत सारे बेसिन्स रखे गए है। टॉयलेट सोवर रखे गए है।

पेट्रोल पंप में एक ऑटो खड़े हैं जो कि फ्यूल डलवा रहे हैं कुछ बाइक खड़ी हैं।

चार्जर और हेडफोंस केबल पेनड्राइव बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

यह एक मेकअप स्टोर का दृश्य है यहां पे महिलाओं के बहुत सारे सामान है।

छोटे -छोटे डब्बे रखे गये है फेवीक्विक रखे गये है तीन जार एक टेबल पे रखा गया है।

यह एक कार्यक्रम का दृश्य है।